बोतल है लाइट है दरवाज़े कि फ्रेम है दरवाजा खुला हैं।

कुछ पिल्लर है छोटे छोटे पेड़ के पत्तीया है।

यहा रस्ता है कुछ तार है कुछ बड़े पेड़ है कुछ छोटे पेड़ है सिडिया है गाडी खड़ी है।

यहाँ एक मंदिर है मंदिर पे कलश दिखाई दे रहे है कुछ लोग वहा खड़े है।

एक काले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है एक कत्थे कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है कुछ गाड़िया लगी है खिड़किया है।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है एक चप्पल दिखाई दे रही है उपर काले-काले बादल है।